डली हुई है और जहां बहोत सारी स्लिपर डली हुई है। बाहर और बहोत --

खिड़किया है और पास मे दो कैट है और ये --

बहुत सारी लाइटे लगी हुई है। इसमे पंखा लगा हुआ है और ये अभी साफ-सुथरा बिल्कुल --

उनके पीछे एक बैनर लगा हुआ है।

पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सारी गइया चर रही हैं। ये खेतों पर बंधी हुई हैं।

ग्रे कलर का टार पुता हुआ है बहुत सारे बॉक्स डले हुए हैं बहुत सारी चैयरे हैं और बहुत सारे --